हरा पिला नीला खूब जाने पहेल वाला लोग साड़ी अच्छा लग ता खूब बढ़िया लगता। अर्घा देत तन लोग ग नदी बड़ी --